यह एक आ सब्जियां आए है यहाँ सब्जियों का बाजार दिख रहा हैयहाँ जो मुझे फोकस लग रही हैं वह हैं लाल मिर्च और हरे मिर्च । ये खानों में बहुत-बहुत मजे के होती हैं।

ये एक दुकान दिख रहा है | ये प्रोविशन स्टोर्स है | जहाँ हम जा के रोज़ की चीजें खरीदते हैं | यहाँ पर मुझे तेल दिख रहा है | पोस्ट -

यहाँ पर पूरा अ छोटे-छोटे सेक्शन है । ऐसे लग रहा है एक मंदिर है और एक औरत वहाँ जा रही है दृश्य में होके सीधे होके जा रही है।

यहाँ पे बोहोत सारे कैबेज उगे हुए दिख रहे हैं और पूरी फील्ड में कैबेज ही कैबेज यह प्यारा दृश्य हैं और यहाँ से माली लेके जा के --

यहां पर इ बहुत अजीब सी अ एनिमल दिख रहे हैं।

यहाँ जी.पी. इ यूनिफॉर्म पहनकर बच्चियाँ खेल रही हैं।

यहाँ पर अ एक लड़का वाला डाल है जोकि की शर्ट पहना हैँ।

ये एक रेस्टोरेंट है और मुझे यहां इदलियां --

और उनके बहुत से रिश्तेदार आए है और ऐसे लग रहा है कि बहुत --

धूमधाम और मनोरंजन से सब फोटो खींच रहे है ।